यह एक वॉल हाउस है जिसके नीचे एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है।

एक ऐड का बोर्ड भी लगा है।

दिए जला रखे है और श्रद्धालु यहाँ अंदर जा रहे है। जय हो।

यह एक एसबीआई का बैंक है जिसके बगल मे एसबीआई का एटीएम भी है इसके सामने --

यह छतीसगढ़ का महा विद्यालय है।

जिसके सामने कुछ विद्यार्थी अपने हाँथ में और बैग लेकर खड़े हैं। एक ने तो चश्मा पहन रक्खा है। और उसके सामने दो लेडिस बात कर रही हैं।

यह सार्थक फाउंडेशन का सीन प्रतीत होता है जिसमें एक सर बोर्ड लेके झोपड़ी में झोपड़ी के बाहर खड़े हैं।